यह एक पार्क का सीन है जहा पे एक स्टैच्यू टाइप मे कुछ बनाया हुआ है और आसपास काफी पेड़ पौधे है।

ये एक आर्टिफिशल लग रहा है और आसपास काफी पेड़ पौधे है।

अ पेड़ पौधे है कुछ पेड़ पौधे तो अ हरा मतलब म ह उनसे पत्त नहीं आ रहे कुछ पेड़ पौधे काफी हरे भरे दिख रहे--

यह एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल मे काफी बच्चे स्विमिंग कर रहे है। बीच मे एक पिलर भी है। और इसमे --

और जैसे लगता है कि ये ज़ू मे इसको प्रिजर्वेड किया गया है कंजरवेशन के लिए।